जोकि इमारत दिखाई दे रही है जिसके जालीदार खिड़कियां लगी हुई है बाहर की तरफ में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे यह मेला लग रहा है जिसमें झूले ही झूले दिखाई दे रहे हैं और लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ में बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे जो कि रेगिस्तान दिखाई दे रहा है जिसमें--

मछलियां मछलियों का मार्केट दिखाई दे रहा है जिसमें एक आंटी जी खड़ी नजर आ रही है और मछलियां जोकि --

इस तस्वीर मे में देख पा रहा हूं मुझे पीछे कुत्र अपने बहोत बड़े--

और पिछे त तो हम देखने के लिए उत्तम व्यवस्था का उत्तम व्यवस्था भीं दिखाई दे रहीं हैं और सब सुंदर लग रहा --

इस तस्वीर में मै देख पा रहा हूं पीछे की तरफ में एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ लिखा जा रहा है जो एक लड़का भी मेज टेबल पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे दो दुकाने दिखाई दे रही है जोकि मुझे दूध की डेयरी लग रही है उसके बाहर की तरफ में दूध की कैन रखी गई है।

और बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है और जो की पेड़ जो की सीढ़िया है वो भी चौड़ी नज़र आ रही है और लंबी नज़र आ --

इस तस्वीर में मैं देख पा रा हूं मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि स्विफ्ट गाड़ी भी दिखाई दे रही है और--

जो कि एक अलमारी मे सजाय गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इनके फायदे और नुकसान भी उसके ऊपर लिखे हुए है।

बहुत सारे सामान रखे गए हैं और ये एक ई मित्र भी हो सकता है पीछे की तरफ मे गत्ते की कुछ डिब्बे दिखाई दे रही है।

लचीले पदार्थ के लग रहे हैं और इसमें पानी ही पानी भरा हुआ लग रहा है।